छवि में कुछ लोग है जिन्होने रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए हैं एक व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन है।

यह छवि खुले क्षेत्र का है छवि में बड़ी बड़ी इमारत है।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

साइड में डस्टबिन है जो हरा रंग का है।

में एक टेबल है टेबल पर सफेद रंग का कपड़ा बिछाया हुआ है।

आस पास कई तरह के पेड़ पौधे हैं पेड़ पौधे हरे रंग के हैं।

गाड़ी का रंग काला और सफेद रंग का है।

दुकान के अंदर बड़े बड़े डब्बे हैं डब्बे पर बजाज कंपनी का लोगो बना हुआ है।

ऑटो नीले रंग का है ए_सी सफेद रंग का है।

छवि में एक सीढ़ी है सीढ़ी काले रंग की है।

यह छवि एक पार्क के अंदर का तस्वीर है।

छवि में बड़े बड़े पोस्टर है।

धरी में एक टोकरी है टोकरी नीला रंग की है।

यह छवि खुले क्षेत्र का है।